वो जो दीवाले हैं वो जाली-जाली टाइप में है। वो जाली ब्लैक कलर का है।

बैलून लगा है। बैलून का कलर रेड और व्हाइट है।

सामने में एक फोटो दिख रहा है वो फोटो मुझे एक छोटा-मोटा गार्डन दिख रहा है।